यहाँ एक भारतीय स्टेट बैंक का बैनर लगा हुआ है बैनर के बाहर एक लेडीज एक जेंट्स बैठे हुए है।

यह एक ओनलाइन की शॉप है उसके बाहर येलो कलर का बैनर लगा हुआ है उसके बाहर एक व्यक्ति नीचे बैठा हुआ है।